काफी सारे लोग धोती पे खुश लगे हुए दिख रहे हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है यहां पे बड़ा सा रेफ्रिजरेटर देख सकते हैं जिस पे रोलिक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यह एक साइकिल का दृश्य है यह एक नई लग रही है इसके बहुत मोटे और बड़े टायर दिख रहे हैं।

पीछे बहोत सारे बड़े बड़े बैनर लगे हुए है।

छे थोड़ी रोशनी आई हुई नजर आ रही है।

यहां पर हम कंबल को अनफोल्ड किए हुए देख सकते--

जमीन पर हल्की हरी हरी घास उगी हुइ दिखाई दे रही है।

यह होटल का क्षेत्र का दृश्य नजर आ रहा है यहां पर हम एक बड़ा सा काउंटर टेबल देख सकते हैं।

कुछ काले और कुछ लाल दिख रहे हैं यहां पर बहुत सारे बेंच लगे हुए देख सकते हैं।

यहां पर बंडी और एक कुर्ती दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक युवक छोटी छोटी बच्ची बेचते हुए नजर आ रहा है तो एक युवक बड़ी बड़ी मछली बेचते हुए नजर आ रहा है।

यहां पर एक साफ सुथरा सड़क दिखाई दे रहा है।

चारों तरफ मिट्टी फैली हुई नजर आ रही है।

यहां पर बहुत सारे टेबल और चेयर रखे गए हैं।

यह एक मार्केट का दृश्य लग रहा है यहां पर एक युवक कपड़े बेचते हुए नजर आ रहा है।

यहां पर एक स्विच बोर्ड नजर आ रहा है और कुछ रैक्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं और कुछ बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

नाव पर शहीद स्थल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा लोहे का कुछ नजर आ रहा है पीछे एक बड़ा सा बैनर वाला दिख रहा है।

काफी सारे लोग पेट्रोल भराने के लिए रुके हुए दिख सकते है।